जैसा की मैं यहाँ पर देख पा रही हू यहाँ पर एक ढाबा या कॅफे का फोटो है और यहाँ पर देखिये टेबल हेंगी।

हरे भरे से पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर रोशनी नज़र आ रही है ज़मीन पर हरी भरी घास भी है --

कारखाना नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ मशीनें लगी हैं और यहाँ पर कुछ रेत जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि --

मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पर कॉफी कव लिखा हुआ एक बोर्ड नजर आ रहा है और पास में ही एक --

जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये एक चर्च है और यहाँ पर देखिए चर्च का सिंबल दिख रहा है।

और बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक माइक रखा हुआ है और एक आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

हर्ट जैसा बना हुआ है और पीछे की तरफ से कुछ पेड़ दिख रहे हैं पास में ही यहाँ पर एक औरत खड़ी हुई --

मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर एक दीवार नजर आ रही है और दीवार के ऊपर से एक लाइटिंग वाला झूला दिख रहा है।

जहाँ पर फ्लावर गैलरी में बहुत सारे गमले रखे हुए हैं और --

पोस्टर लगे हुए हैं शॉप का जो काउंटर है उस पर भी कुछ पोस्टर छिपके --

मैं यहाँ पर देख पा रही हु की एक रेल्वे स्टेशन की तस्वीर है यहाँ पर देखिये एक ट्रेन दिखाई दे रही है जमीन पर रेल की पटरीया बनी हुई है।

नदी के किनारे की तरफ एक नाव दिख रही है और आसमान पे बादल दिख रहे हैं।

मैं यहाँ पर देख पा रही हू यहाँ पर एक स्लॅप पड़ती हुई दिख रही है और यहाँ पर बीच मे सरिया का जाल है।

मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये एक पहाड़ी इलाका है और इसमें देखिए जगह-जगह पर पत्थर पड़े हुए हैं।

यहाँ पर मैंने देख रही हूँ ये एक रोड दिख रही है और रोड के साइड में एक --

लिखा हुआ है और पास में कुछ स्कूटी खड़ी हैं स्कूटी के पास में --

पुल सा दिख रहा है और साथ में चारों तरफ हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

नीचे एक सीढ़ी पड़ी हुई है और सामने एक हट जैसा टेंट बना है जिसमे दो आदमी बैठे हुए है।

और पीछे भी कुछ कारें हैं सामने एक कार कवर लगी हुई है पीछे बड़े से वृक्ष हैं और सामने आदमी नजर आ रहे हैं।

मै यहापर देख पा रही हु यहापर ये दुकाने नजर आ रही है दुकानों के उपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर लोकसेवा केंद्र नजर आ रहा है।

मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक पार्लर है और यहाँ पर देखिए सोफे लगे हुए हैं यहाँ पर सामने अलमारी में बहुत सारी --

मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक शॉप है जिसमें कि --

मै यहापर देख पा रही हु ये एक बडासा पत्थर है पत्थर के अंदर जाने की रास --

पेड़ दिख रहे हैं मिट्टी पर भी कुछ घास जैसी उगी हुई दिख रही है।

और यहाँ पर कुछ मछलियों के ऊपर बर्फ भी लगी हुई है।

मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं नीचे की तरफ --

की तरफ एक बहुत बड़ा सा गेट नजर आ रहा है जिस पे द्वार लिखा हुआ है और पास में ये पेड़ लगे हुए हैं।

बाउंड्री के बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई नजर आ रही है।

और चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ों की परछाई नदी के पानी में दिख रही है।

मै यहा पर देख पा रही हु यहा पर एक ये जिम है जिसमे मशीने लगी हुई है सामने एक ए.सी. है दीवार --

मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक मैरिज हॉल है जिसमें बाहर बहुत सारी लाइटों से सजावट है और यहाँ पर --

सीढ़ियों के पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं --